लिबर ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम लिबरऑफिस में सिम्पल फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे
यहाँ हम निम्न सीखेंगे
फॉर्म क्या है
विजार्ड का उपयोग करके फॉर्म कैसे बनायें
अभी तक लिबर ऑफिस का उपयोग करके हमने डेटाबेस और टेबल्स बनाने के बारे में सीखा जहाँ हम डेटा संचित करते हैं
लेकिन डेटाबेस टेबल्स के अंदर हम डेटा कैसे एंटर करें
एक तरीका है कि टेबल्स की सेल्स में डेटा सीधे टाइप करें जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया
यहाँ जल्दी और साथ ही साथ कम से कम एरर्स के साथ डेटा एंटर करने के लिए एक अन्य तरीका है
और वह है फॉर्म्स का उपयोग करके
फॉर्म डेटा एंटर करने और डेटा एडिट करने के लिए अग्रसिरा या यूजर इंटरफेस है
उदाहरणस्वरूप सिम्पल फॉर्म फील्ड्स को टेबल में शामिल कर सकता है
चलिए लाइब्रेरी डेटाबेस के उदाहरण पर विचार करते हैं जिसे हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में बनाया है
अतः सिम्पल फॉर्म फील्ड्स को बुक्स टेबल में शामिल कर सकता है
और अब इस फॉर्म का उपयोग बुक्स टेबल में डेटा एंटर करने के लिए किया जा सकता है
अब चलिए सीखते हैं कि फॉर्म कैसे बनायें
पहले लिबरऑफिस बेस प्रोग्राम को शुरू करें
यदि बेस प्रोग्राम नहीं खुलता है तो हम नीचे बायीं ओर पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर अल्ल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे फिर लिब्रियोफिस सूटे पर क्लिक करेंगे और फिर लिब्रियोफिस बसे पर क्लिक करेंगे
अब ओपन एएन एक्सिस्टिंग डेटाबेस फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें
रिसेंटली यूज्ड ड्राप डाउन बॉक्स में हमारा लाइब्रेरी डेटाबेस दिखाई देनी चाहिए
अतः अब इसे चुनें और फिनिश बटन पर क्लिक करें
यदि लिबरऑफिस बेस पहले से ही खुला है
तो हम सबसे ऊपर फाइल मेनू और फिर ओपन पर क्लिक करके लाइब्रेरी डेटाबेस फाइल libraryओडीबी को ओपन कर सकते हैं
वैकल्पिक रूप से फाइल मेन्यू मैं रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें और libraryओडीबी को चुनें
अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं
लेफ्ट पैनल पर डेटाबेस सूची में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि यहाँ नया फॉर्म बनाने के दो तरीके हैं डिजाइन व्यू में फॉर्म बनाना और फॉर्म बनाने के लिए विजार्ड का उपयोग करना
दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें उसे विजार्ड टो क्रिएट फॉर्म
अब हम एक नई विंडो देखते हैं जो कि लिबरऑफिस राइटर विंडो के समान है
और इसमें सबसे ऊपर हम एक पॉप अप विंडो देखते हैं जो हैः फॉर्म विजार्ड
बुक्स टेबल आधारित अपना पहला फॉर्म बनाने के लिए इस विजार्ड के माध्यम से जाएँ
बायीं ओर 8 स्टेप्स का ध्यान रखें जिनके माध्यम से हमें कार्य करना होगा
हम स्टेप 1 पर हैं जो कि फील्ड सिलेक्शन है
और यहाँ दायीं ओर पर टेबल्स ओर क्वेरीज नामक ड्रॉप डाउन से टेबल्सबुक्स चुनें
इसके नीचे बायीं ओर पर हम अवेलेबल फील्ड्स की एक सूची देखते हैं
दायीं ओर पर हम फील्ड्स इन थे फॉर्म देखते हैं
हमें केवल उन फील्ड्स का स्थानांतरण करना है जो हमें फॉर्म पर चाहिए
अभी के लिए डबल एरो मार्क सिम्बल्स वाले बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें हमने सारे फील्ड्स बायें से दायें स्थानांतरित कर दिये हैं
क्योंकि हमने इसके स्वयं के नम्बर्स को स्वत तैयार करने के लिए बुकिड फील्ड को सेट कर दिया है हमें फॉर्म पर इसकी आवश्यकता नहीं है
तो चलिए इस फील्ड को वापस बायीं ओर स्थानांतरित करते हैं
दायीं ओर बुकिड पर क्लिक करें और लेस थान सिम्बल बटन पर क्लिक करें
ठीक हैअब सबसे नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले स्टेप पर जाएँ
स्टेप 2
क्योंकि हम सिम्पल फॉर्म बना रहे हैं तो अभी के लिए इस स्टेप को छोड़ दें और सीधे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें
हम स्टेप 5 पर हैं अरेंज कंट्रोल्स
यह भी ध्यान दें कि हम बैकग्राउंड विंडो में एक ऑरेंज बैकग्राउंड में बुक्स टेबल देख सकते हैं
अरेंजमेंट ओएफ थे मैन फॉर्म नामक लेबल के नीचे चार आइकन्स पर क्लिक करें
जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि लेबल्स और टाइटल रचयिता आदि नामक टेक्स्ट बॉक्सेस की व्यवस्था बदल रही है
कोलमनार - लेबल्स लेफ्ट नामक पहले क्रम का उपयोग करें और पहले आइकन पर क्लिक करें
यहाँ लेबल्स बायीं ओर और टेक्स्ट बॉक्सेस दायीं ओर हैं एक विशिष्ट पेपर फॉर्म की तरह
अब आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें
हम सेट दाता एंट्री नामक स्टेप 6 पर हैं
अभी के लिए हम इस स्टेप को छोड़ देगें और अगले स्टेप पर जायेंगे
स्टेप 7
एप्ली स्टाइल्स
ध्यान दें कि जैसे ही हम लिस्ट बॉक्स के प्रत्येक कलर को क्लिक करते हैं विंडो का बैकग्गाउंड कलर बदलता है
इस पर क्लिक करके ईसीई ब्लू को चुनें
अब आखिरी स्टेप पर जाते हैं
स्टेप 8
अब अपने फॉर्म को नाम दें
हम अपने खुद के नाम के चलन का अनुकरण कर सकते हैं
लेकिन अभी के लिए टेक्स्ट बॉक्स में विवरणात्मक नाम बुक्स दाता एंट्री फॉर्म लिखें जो कि नामे ओएफ थे फॉर्म लेबल के नीचे है
अब होव डीओ वे वांट टो प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग थे form
पहला वर्क विथ थे फॉर्म
मतलब हम डेटा एंट्री के लिए फॉर्म का उपयोग करना शुरू करेंगे
फॉर्म का डिजाइन बदलने के लिए हम मॉडिफाई थे फॉर्म चुन सकते हैं जिसे हम बाद में देखेंगे
अभी के लिए हमने कर दिया है तो सबसे नीचे फिनिश बटन पर क्लिक करें
अभी हमने विंडो टाइटल पर बुक्स दाता एंट्री फॉर्म नामक अपना पहला सिम्पल फॉर्म बना दिया है
ध्यान दें कि टेक्स्ट बॉक्सेस वेल्यू से भर गये हैं जैसे एएन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू आदि
ये वेल्यूस कहाँ से आयी हैं
हमने इन वेल्यूस को बेस ट्यूटोरियल के पिछले भाग में सीधे बुक्स टेबल में टाइप किया था
अब यह फॉर्म डेटा एंट्री के लिए उपयोग करने के लिए तैयार है
प्रत्येक वेल्यू पर जाने के लिए tab कीज पर क्लिक करें
ध्यान दें कि फॉर्म दूसरी बुक की जानकारी दिखा रहा है और अब टाइटल कॉन्क्वेस्ट ओएफ सेल्फ है
हम प्रत्येक बुक की जानकारी पर भी जा सकते हैं अन्यथा ब्लैक ट्राइएंगल आइकन पर क्लिक करके रेकॉर्ड चुन सकते है जो सबसे नीचे फॉर्म नेविगैशन टूलबार में दांयी ओर संकेत करता है
ध्यान दें कि रिकार्ड नम्बर 3 ओएफ 5 यहाँ दिखाई देता है
ध्यान दें कि बेस टूल टिप्स प्रदर्शित करता है जब हम अपना कर्सर इन काले एरो आइकन्स पर रखते हैं
फर्स्ट Recordपहला रिकार्ड प्रीवियस Recordपिछला रिकार्ड नेक्स्ट Recordअगला रिकार्ड और लास्ट रेकॉर्ड आखिरी रिकार्ड
हम इनका उपयोग करके रिकार्ड्स में यहाँ वहां जा सकते हैं
अब हम लिबरऑफिस बेस में सिम्पल फॉर्म्स पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने सीखा फॉर्म क्या है विजार्ड का उपयोग करके फॉर्म कैसे बनायें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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है
इस पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद